यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की लग रही है। दीवार में सजावट का काम दिखाई दे रही है।

पीछे के बकरियां काला कलर की है जमीन पर धूप की परछाई पड़ रही है।

साइड में एक्सरसाइज करने की चीजे हैं।

बिल्डिंग के बाहर एक कार और एक इंसान नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर में मुझे एक दुकान नजर आ रही है।

अंदर लाइटिंग्स लगी हुई है।

डेकोरेशन के लिए वॉल फोटोस लगे हुए हैं।

ऑक्सीजन सिलेंडर तीन हैं डॉक्टर ने मास्क लगाया हुआ है।

रूम का कलर सफेद है और कर्टन लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा शॉप दिखाई दे रही है।

पोस्ट में चाय का कप दिखाई दे रहा है।

साइड में खराब गाड़ियां पड़ी हुई हैं।

ऊपर डेकोरेशन के लिए पेपर कलर लगाया हुआ है।

इसने हाठो में कंगन पहना है।

ऊपर सब बिंदीयां चूड़ियां पे सब नजर आ रहे है।

नीचे का फ्लोर टाइल्स है।

उसके राइट में कोन के पेड़ हैं।

नारियल के पौधों नजर आ रहे हैं आसमान साफ है।

उसके बाहर ए_टी_एम और एस_बी_आई लिखा हुआ है।

जो फल के तरफ मुंह करे हुए हैं इस दुकान पर प्रकार प्रकार के फल है।